टॉप एन टाउन के बाजू में एक पल द फैमिली ढाबा भी है।

बिल्डिंग का नाम क्रेन है इधर साइकिलें भी रखी हुई हैं ग्रीन कलर के पेड़ पौधे रखे हुए हैं।

इस पिक्चर में दरगाह दिखाई दे रही हैं तीन चार पंखे हैं दो घड़ी हैं।

एक बोर्ड पे लिखा हुआ है राजपुर रेस्टोरेंट यह एक रेस्टोरेंट है रेड कलर के पिलर हैं।

एक ऑटो खरा है एक कार एक एक्टिवा बिल्डिंग ग्रीन कलर की है।

तालाव दिखाई दे रहा है नाव यलो ग्रीन कलर की हैं।